टहल रही है गाय बहुत सुंदर है और चर रही है।

सभी लोग खाने-पीने के लिए ले जाते हैं और बहुत अच्छी तरीके से यहां पे भुगतान भी कर जाते है।

इण्डिया का ब्रांच है जो की बहुत अच्छा है सेंट्रल बैंक बहुत अच्छा बैंक है। सेंट्रल बैंक में सबको अपना खाता खुलवाना चाहिये सेंट्रल बैंक का सर्विस बहुत ही अच्छा है और ये सरकारी बैंक है इसमे कोई पैसे धांधली का बात नहीं है। सेंट्रल बैंक का ऑफ़ इण्डिया में भी कोई बैंक का मर्जर भी नही हुआ है।

फार्म है और इ बहुत अच्छा फारम है यहाँ पे डेयरी प्रॉडक्ट सारे मिलते हैं डेवी डेयरी डाइरेक्ट कनेक्ट है --

यहाँ पे दूध मिलता है उनका एक अलग ब्रांड है बी.डी.एफ़. करके उसी से ये लोग दूध निकालते हैं ये दूध बहुत अच्छा होता है दूध सब लोग पीते हैं झारखंड के जिले के सभी लोग जायें झारखंड नहीं छत्तीसगढ़ के सभी लोग यहीं से दूध लेते हैं जो की बहुत अच्छा बात है ।

जो कि आ इसमें श्रद्धा मतलब उसमें यीशु मसीह की जो है कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं और ये काफी अच्छा प्रोग्राम करते हैं बच्चे ये कही भी जाते है बच्चे मन के सच्चे हैं।

मारुति सुजुकी का हटो इंडिया करके है और यहाँ पे सभी प्रकार का फैसिलिटी दिया जाता है ।

गंगा का तो किनारा नहीं है समुद्र टाइप लग रहा है इ पानी का रिजरवाइर है और उधर पहाड़ भी है।

ये लोग कोई सोचने वाली और इस तरह की तथ्य पर बात नहीं करते है केवल इनको बच्चे आने चाहिए इनका यही मोटो और --

हमको लगता है पूरा खंड वाले हैं।

क्योंकि इनका सब चीजें जब्त कर लिया जाएगा अगर कागज पत्तर सही नहीं होगा तो।

और इसको बोलता है की धरती में जा के उतारो एकदम बड़ियाह रहेगा।